जहाँ पर आगे भी बहुत सारी खिड़कियाँ दिख रही हैं एक ब्लू कलर का बोर्ड हैं ।

दिया हैं छोटे-छोटे स्टॉप टॉप हैं ।

ये एक हरी भरी पहाड़ है ऊपर से झरना है पानी गिर रहा है नीचे से पानी ओ--

ग्लूकोस का पाइप हैं ।

यहाँ पर एक पेट्रोल पंप हैं जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं ।

और पोस्टर लगे हुए हैं एक लड़की बॉडी --